यहाँ पर हरयाली दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर जमीन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर कुछ बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे है।

मुझे यहाँ पर ज़मीन दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर खम्भा दिखाई दे रहा हैं।

मुझे यहाँ पर नीला नीला आसमान दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर एक नदी दिखाई दे रही है।

एक ब्रिज दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पानी की टंकी दिखाई दे रही है।

मुझे यहाँ पर पानी में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे है मुझे यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा है मुझे जंगल में भी पेड़ दिखाई रहे है मुझे यहाँ और ज़मीन दिखाई दे रही हैं।

मुझे यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है मझे यहाँ पर बहुत सारी बसें दिखाई दे रही हैं जो पीरे कलर में हैं।

मुझे यहाँ पर खंबा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर आसमान दिखाई दे रहा है।

मुझे यहाँ पर पानी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर पानी की टंकी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पर जंगल दिखाई दे रहा है।